और बहुत सारी लाइट जली हुई है।

इस चित्र में हमें एक इमारत दिखाई दे रहा है।

जिसके ऊपर कई सारी पंछीया भी बैठी हुई हैं।

एवं इस तस्वीर में हमें एक घर दिखाई दे रहा है।

इस तस्वीर हमें कई सारे मकान दिखाई दे रहे हैं।

मे कुछ लिखा हुआ भी है।

इमारत दिखाई दे रही है।

और इमारत के पास ही हमें बहुत ही बड़ा वृक्ष भी दिखाई दे रहा है।

इस चित्र में हमें बहुत सारी इमारतें नजर आ रही है।

जिसमें कई सारे पौधे लगे हुए हैं ।

एवं होटल में कई सारी कुर्सियां भी है जो गुलाबी कलर की है।

जहाँ पे कई सारी तरह तरह की गाडियाँ मिलती हैं।

में खाने के लिए कुछ कटोरी में रखा हुआ भी है।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

एक सीसीटीवी कैमरा भी नजर आ रही है।

और दो काले रंग के पंखे भी नजर आ रहे है ।

जीनमें से एक मकान के पास--

प्रकाशित करने वाले लाइट भी लगे हुए हैं।

धार्मिक मालाये भी टंगी हुई है।

दो सफेद रंग की लाइट भी जली हुई है।

बहुत सारी हरि हरि फसलें भी नजर आ रही है।

पीले कलर के कपड़े पास में टंगी हुई है।

तिरंगा को फहराने के लिए तैयारी कर रहे है।

छोटा और प्यारा सा झरना दिखाई दे रहा है।

एक दरवाजा भी है जिसका रंग भूरा कलर का है।

दरवाजे बंद और खिड़की खुली हुई है।

इस डाकघर के बाहर एक पत्र बॉक्स भी रखा हुआ है।

यह तो कोई चार पहिए वाहन में चलते हुए दिखाई दे रहे हैं।

ये सारे ताड़ के वृक्ष भी नजर आ रहे हैं।

जो कई सारी केबल्स से जुड़ी हुई है।

इस तस्वीर में हमे कई सारे मकान दिखाई दे रहे है।

इस तस्वीर में हमें एक मस्जिद दिखाई दे रहा है।